यहाँ पर देखते है अभी ईट - चदरा का घर बना हुआ है यहाँ पर बोरा रखा हुआ है वहाँ पर एक टीना है। चदरा का घर है यहाँ पर एक गो फोटो लगा हुआ है। दो गो लेडीज है दो गो --

नीम का गाछ है इमली नहीं नीम का गाछ है पूरा अच्छा से घर है सजा हुआ है पूरा मस्त दिख रहा है अभी।